तस्वीर में कैरेट दिख रहा है कच्चा टमाटर दिख रहा है लाल लाल टमाटर दिख रहा है ढेर सारे टमाटर दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है ढेर सारे गिटार दिखाई दे रहा है ढोलक दिखाई दे रहा है।

तीन चार आदमी दिखाई दे रहे है।

जीम मै सामान दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है।

बैलून दिखाई दे रहा है शीशा दिखाई दे रहा है पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रहा है।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

लेडीज दिखाई दे रहा है गेट दिखाई दे रहा है।

गिड़की दिखाई दे रहा है आदमी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है।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

घर दिखाई दे रहा है पेर पौधा दिखाई दे रहा है सीढ़ी दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

तीन-चार आदमी दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रहा है।

नीचे सीढी दिखाई दे रहा है आदमी दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल पेल - पौधा दिखाई दे रहा है।

कूलर दिखाई दे रहा है ढेर सारी सामान दिखाई दे रहे हैं।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

लॉकर दिखाई दे रहा है ऊपर लाइट दिखाई दे रहा है।

तीन चार लॉकर दिखाई दे रहा है पंखा दिखाई दे रहा है।

ढेर सारे फल दिखाई दे रहा है कागज दिखाई दे रहा है।

दोकान दिखाई दे रहा है ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है।

औरत दिखाई दे रहा है जिम कर रहा है घास दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है।

ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है कुर्सी दिखाई दे रहा है।

नीचे जमीन दिखाई दे रहा है अगल-बगल पेड़ दिखाई दे रहा है बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है शीशा दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैमिट्टी दिखाई दे रही है।

तीन चार खिड़की दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में घर दिख रहा है।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

घर दिख रहा है ढेर सारी सामान दिख रहा है।

घास दिख रहा है सामने पर्दा दिख रहा है लाइट दिख रहा है।

इस तस्वीर में पत्थल दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है तीन चार लाल कुर्सी दिख रहा है।

फूल दिख रहा है लाइट दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे धरती दिख रहा है तीनचार लड़की दिख रही है।

तीन-चार छोटे-छोटे लड़का दिख रहा है।

टाइ दिख रहा है हरा बाल्टी दिख रहा है।

दो आदमी दिख रहा है सामने एक लड़की दिख रही है।

खिड़की दिख रहा है ऊपर पंखा दिख रहा है ढेर सारी आदमी दिख रहा है।

सामान दिख रहा है गेट दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रहा है तीन-चार आदमी दिखाई दे रहे हैं।

फूल दिखाई दे रहा है छोटा-छोटा पेड़ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है।

सामने खिड़की दिखाई दे रहा है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है दो आदमी दिखाई दे रहा है।

दुल्हा- दुल्हन दिखाई दे रहा हैपंडित दिखाई दे रहा --

खिड़की दिखाई दे रहा है शीशा दिखाई दे रहा है फूल दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है।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

बोट दिखाई दे रहा है ढेर सारी देवाल पर फोटो दिखाई दे रहा है।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

अगल-बगल घर दिखाई दे रहा है।

ढेर सारी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

अगल-बगल पेड़- पौधा दिखाई दे रहे है।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

दो आदमी फोटो खींच रहे हैं।

घर दिख रहा है आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

शीशा दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

फूल दिख रहा हैगेंदा का हरा भरा घास दिख रहा है।

तस्वीर में एक बगुला दिख रहा है।

पेड़ पीला दिख रहा है पानी दिख रहा है घास दिख रहा है ढेर सारा पैर-पौधा दिख --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

पिंक बाल्टी दिख रहा है ऊपर लाइट दिख रहा है बड़ा कमरा दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है गेट दिख रहा है।

इस तस्वीर में सामने घर दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।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

ढेर सारे दावा दिखाई दे रहा है।

बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

बड़ा-बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

छोटा बच्चा का मूडी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में सामान दिखाई दे रहा है।

ढेर सारे सामान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में पंप दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में पेड़ -पौधा दिखाई दे रहा है।

गमला छोटा दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है अगल-बगल घर दिखाई दे रहा है।